यह किसी ओवरब्रिज की तस्वीर है जो बन रहा है यहाँ पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है--

यहाँ पीछे में बहोत बड़े - बड़े गाडियाँ दिखाई दे रही है पीछे में पैरा दिखाई दे रहा है बहोत सारे मिट्टियाँ दिखाई दे रही है ओवरब्रिज पुराना दिखाई दे रहा है।

जंगल की तस्वीर लग रही है ऊपर में तार दिखाई दे रहा है यहाँ ग्रिल लगा हुआ दिखाई दे रहा है लोहे का नदी दिखाई दे रहा है।

एक खंभा दिखाई दे रहा है जिसमे लाइट लगा हुआ है एक बगल में दिखाई दे रहा हैं बगल में मंडप दिखाई दे रहा है हरे- भरे घास दिखाई दे रहा है पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है ।

यह एक दुकान है महादेव बेकरी एंड दूध डेयरी का दुकान हैं यहाँ कुछ बोर्ड्स लगे हुए है बगल में महादेव बेकरी एंड दूध डेयरी भी लिखाया हुआ है।